हरी घास वहा पर काफी ज्यादा नज़र आ रही है और कंपाउंड जो है वह क्रीम कलर का दिख रहा है। काफी सारे बिल्डिंग नज़र आ रहे सामने में काफी बड़े हरे वृक्ष नज़र आ रहे।